जहां पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बच्चे कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

बगल में कुछ औरतें भी खड़ी है।

कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

साइड पे मुझे एक बछड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने के काउंटर पे मुझे एक लैपटॉप रखा दिखाई दे रहा है।

सामने मैं एक बड़ी इमारत देख पा रही हूं।

नीचे की तरफ टेबल पे भी कुछ सूट रखे गए हैं अंदर कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है।

जहां पे मैं कुछ स्कूटी और एक चर पहिया वाहन खड़ा देख पा रही हूं।